यहाँ पर बोट है बगल-बगल में लोहे का दिया हुआ है। एक बढ़िया सा स्कूल है।

पर बुक फोटोकॉपी लैमीनेशन होता है। बोहुत मंहगे फोटोकापी लेमिनैशन होता है। बुक बल्क अस्टेशनरी होता है। यहाँ पर है। यहाँ बोहुत सारे एक जन खड़े हैं और अंदर से दिकाल एक जना और खड़े हैं। बोहुत कलर कॉपी खिलौने बोहुत चीज रखे हुए हैं। वाइट वाइट कलर का --